यह एक मंदिर है मंदिर में तीन पीतल की माता की प्रतिमा रखी हुई है जिसमें कि यह आदमी उन माता की पूजा कर रहा है.

येके सामने बहोत सारे पड़ाके रखे हुए तरह तरह के रोकेट रखा हुआ हैं।

यहां पे कुछ बच्चे हैं कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष है सभी ऐसा लग रहा है क्रिश्चियन है.

यह एक कपड़े की दुकान है यहां पे देखिए टी-शर्ट शर्ट --

यह एक मोबाइल की दुकान है यहां पे वीवो का बोर्ड लगा हुआ है.

सामने माइक्रो मैक्स का दिख रहा है ओप्पो का दिख रहा है सैमसंग का दिख रहा है --

मुझे यह सड़क दिख रही है सड़क में बहुत सारे ऑटो लगे हुए ऐसा लग रहा है यह ऑटो स्टैंड है कुछ सामान भी यहां पे रखा हुआ है.

यह एक होटल है होटल में टेबल लगे हुए हैं और यहां पे बहुत सारे दुकानदार बैठे हुए हैं.

यह एक सम्मेलन है जो कि रायपुर में हो रहा था यह नित्य कला हो रहा है.

यह यह एक ढावा है ढावा में खाना मिलता है देखिए बहुत सारे चेयर रखे हुए टेबल रखे हुए हैं सामने पेप्सी का--

रस मलाई रखी हुई है संदेश रखे हुए हैं.

में पानी की टंकी लगी हुई है टाटा स्काई लगा हुआ है.

यह एक मंदिर है ये मंदिर महादेव का है सामने मुझे नंदी जी दिख रहे हैं यह मंदिर सुबह पांच बजे से--

ये किसी स्कूल के बच्चे हैं एक ही यूनिफॉर्म में बैठे हुए स्कूल के बाहर ऐसा लग रहा है कि रंगोली बना रहे हैं।

ये एक जंगल है जंगल में मोर है मोर और केले के पत्ते दिख रहे हैं यहां बड़ी-बड़ी गांछे दिख रही है जो कि पेड़ है.

नंदी जी हैं सामने बहुत सारे भगवान हैं गणेश जी हैं और ऊपर पंखे लटके हुए सामने घंटा--

यह एक बत्तक है जो कि बैठा हुआ है पानी में सामने हरे हरे--

ऐसा लग रहा है यहां पे मूर्तियों की दुकान है यहां पे मूर्ति बिकता है माता का मूर्ति--

यह एक फील्ड है फील्ड में हड़े-हड़े घास है चारों तरफ बड़े-बड़े--

यह एक कपड़े का शोरूम है यहां पे कपड़े मिलते हैं सामने ए_सी लगी हुई है.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

सामने एक लड़का खड़ा है और एक लड़की खड़ी है ऐसा लग रहा है कि वह पूजा कर रही है.

यह एक कपड़े की दुकान है यहां पे लड़कियों--

बच्चे का कपड़ा मिलता है तरह-तरह की लेडीज का कपड़ा भी लगा हुआ है यहां पे टेबल रखी--

यह एक पहाड़ है पहाड़ और ऊपर खुला आसमान है.

यहां हरे-हरे पत्ते दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है यहां का मौसम बहुत सुहान--

यह एक झड़ना है यहां पहाड़ों के बीच झड़ना है यहां पे लोग मस्ती करने आते हैं.

यहां पे मुझे सामने एक बड़ी बस दिख रही है एक रिक्शा दिख रहा है.

और बहुत सारे आदमी स्वेटर पहने हुए ऐसा लग रहा है ठंड के मौसम का सीन है.

यहां मुझे लाल कलर की गाड़ी दिख रही है जिसमें कि प्लास्टिक लगा हुआ है और ये आदमी उस गाड़ी को--

कुछ कर रहा है और नीचे एक लड़का बाल्टी में पानी लेके बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज का सफाई कर--

सामने घर दिख रहा है और हरा-हरा गाछ दिख रहा है जो बड़े-बड़े पेड़ हो --